वॉलीट कलर के माल बोहत ही सुंदर लग रहे है बेंच मे गुलाबी कलर के फूल लगे हुए--

यह कच्छ मैदान हैं ऊपर हो रहा है और साइड मे बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं और पेड़ भी दिख रहे हैं।

बगल में बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है और यहाँ बाउन्ड्री के अंदर एक फैक्ट्री बनी हुई है और एक टा ट्रक खड़ा हुआ है और एक केले का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।